शूट कर रहा है बहुत सारी फूल भी दिखाई दे रही बहुत सारी कुर्सियाँ भी दिखाई दे रहीं--

बुक हैं पेन्सिल हैं सिस कटर रबर हैं बहुत सारे औजार दिखाई दे रहै हैं एक बड़ा सा फैन लगा हुआ--

यहाँ पर बहोत सारे लड़के खड़े हुए है सारे लड़के चश्मा लगाए हुए है एक मोटा सा आदमी भी खड़ा रहा है जो कि वो अच्छा नहीं लग रहा है।

मकान के अंदर आदमी भी दिखाई दे रहे है जो की बहुत ही अमेजिंग लग रहे है।

यहां पे बोहोत सरे आदमी दिखाई दे रहें हैं जो की टेंट टाइप का बना हुआ है। बहुत--

यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके पीछे बहुत सारी दुकाने भी दिखाई दे रही है ए--